एगो छत पर डिस टी.वी. है उसके बगल में --

एक पीछे में एक लाइन से एक ताड़ का पेड़ है ए साइड में चाप कटर भी है।

कुछ जंगल उपज गया है किला के ऊपर भी --

ले सकते हैं डॉक्टर जो मेडिसिन लिखेंगे मेडिकल स्टोर से --

टोटो का शोरूम है यहाँ पर बैटरी इ-रिक्शा --

चलते रहिए सौ डेढ़ सौ किलोमीटर ।